यहाँ दो गिटार दिखाई दे रहे है एक ब्लू कलर का है एक येलो कलर का है एक हारमोनियम दिखाई दे रहा है एक हेलमेट दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैक है एक ढोलक दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक बेग रखा हुआ दिखाई दे रहा है जो कि ब्लैक --

यहाँ एक शॉप दिखाई दे रही है जिस पे अमूल लिखा हुआ है तथा पिज्जा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहोत सारे बलून लगे हुए है जो की व्हाइट रेड येलो कलर के दिखाई दे रहे है।

यहाँ पे बोहोत सारी गाड़ियाँ रखी हुई है तथा एक स्कूटी रखी हुई दिखाई दे रही है उनके ऊपर हेलमेट रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

तथा यहाँ दो तीन लाइटिंग दिखाई दे रहे है ज्यादा फैन चार पाँच दिखाई दे रहे है एक सलून दिखाई दे रहा है जिसका खुला हुआ है।

यहाँ एक तालाब दिखाई दे रहा है जिसमें पानी भरा हुआ हैं इसके किनारे एक रोड़ दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ व्यक्ति जाते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ एक गैलरी बनी हुई हैं इसमें एक जीप खड़ी हुई हैं तथा घर दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहोत सारी सीढ़ियां बनी हैं तथा रेल की पटली को पार करने के लिए एक ब्रिज बनाया गया है।

यहाँ एक वर्किंग प्लेस दिखाई दे रहा है जिसमें कई सारे वर्कर काम कर रहें हैं तथा कुछ वर्कर बैठे दिखाई दे रहें हैं कुछ ऊपर दिखाई दे रहें हैं कुछ नीचे दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ एक भैंस दिखाई दे रही है जो की ब्लैक कलर की है इसके गले में एक पट्टा बंधा हुआ है।